बाहर की तरफ एक मैट भी डली हुई हैं।

यहाँ पर और यहाँ कुछ लोग भी अंदर खड़े हुए है बाहर इसका बोर्ड भी लगा हुआ है जो की --

की एक चुनरी टाइप की भी डली हुई है जो की आप लोग देख सकते है।

फोटो जहाँ पर की काफी सारी बाइक स्कूटी कार रिक्शा बस हमें आती-जाती हुई दिखाई दे रही है।